वृष दिखाई दे रहा है और एक सामने चर्च दिखाई दे रही है।

और आसपास में बहुत पानी है और वृक्ष भी थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं।

जिन्होंने सिर पर रूमाल बांध रखा है और सामने एक तस्वीर लगी हुई है।

और कुछ फूल वाले पौधे भी हैं बीच में जाने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है और सामने एक शेड बना --

और आगे स्कूटी भी है और टैक्सी भी आ जा रही है इसके पास एक बहुत बड़ा पेड़ है।

यह एक शॉप है इसके अंदर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

और उसके बाहर एक ए_सी लगी हुई है और उसके अंदर एक ब्लैक कुर्सी और मेज भी रखा --

उसके सिर में भी लगी हुई है और सामने एक है जिसके अंदर ये अपने --